यहाँ पे बहुत सारे अ कपड़े रखे हुए हैं और यहाँ पे मिरर का खिड़की है और दरवाजा --

यहाँ पे रिमोट कंट्रोल से इसको कंट्रोल किया जाता है अगल-बगल यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के शॉप --

ये एक ज़ू है ज़ू में यहां पे लायन यहां पे केज में बंद किया गया हैये लायन दूसरी ओर देख रहा है ।